मुझे गाजर दिखाई दे रही है। गाजर का कलर सफेद है। टमाटर दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर है।

मुझे पेड़ दिखाई दे रहे है। पेड़ों का कलर ग्रीन दिख रहा है। ऊपर की तरफ मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के बाहर एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट ऑरेंज कलर का दिख रहा है। गेट के ऊपर अमरोहा ग्रीनस लिखा है।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

अं-अं मैंगी का वेपर्स भी दिख रहा है जोकि येलो कलर का है। इसमें मुझे अ मसाले भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक चर्च दिखाई दे रहा है फिर इसमें मुझे खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। इसका कलर येलो और वाइट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। घरो के बाहर मुझे अ कार और स्कूटी और बाइक भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की तरफ ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। इसमें चेयर्स भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट ब्लू कलर का दिख रहा है। गेट लोहे का दिख रहा है। ऊपर की तरफ बैनर दिख रहा है। जिस पर --

इस पिक्चर में मुझे एक बुक स्टॉल दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी किताबें हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे कुछ झूले भी दिख रहे हैं। इसमें सामने फिसलपट्टी भी दिखाई दे रही है।

एक लड़के ने अ येलो कलर का जैकेट पहना है। एक ने ब्लैक कलर का जैकेट पहना है। इसमें मुझे टेबल भी दिख रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि ऑरेंज कलर का दिख रहा है। गेट के बाहर मुझे अ कुछ शॉप और --

पीछे की तरफ मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जोकि ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। ऊपर मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

और व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है। लड़के के हाथ में धागा बांधा हुआ है जो कि रेड कलर का है। सामने मुझे ब्रिज दिखाई दे रहा --